झरने से पानी जा रहे हैं अगल बगल खूब सारी चट्टान हैं।

ये खाली जगह है जहाँ पे चिन्हांकित किए है जगह को नाप रहे है।

ये चॉकलेट की शॉप है माल के अंदर जिसमें कई प्रकार की--

जो काफी बड़ा टावर है जिसमें साइड में एक छो बिल्डिंग दिख रहे हैं।

मॉल शॉपिंग मॉल है जहां कपार कार पार्किंग है यहाँ कई सारी--

कुछ घर भी दिख रहे हैं गार्डन दिख रहे हैं जिसमें पेड़ पौधे हैं।

अं ये कोई एग्जिबिशन हॉल जैसे लग रहे एक मैडम बैठी है कुछ स्टूडेंट है जो टेबल लगा के अपना वर्क कर रहे हैं।

जहां पे कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

अं ए_सी दिख रहे हैं और इधर कुछ पोस्टर लगा हुआ है।

ऊपर टी_वी दिखाईं दे रहे है नीले कलर का--

ये गार्डन है गार्डन में रास्ता ब बना हुआ है राईट साइड बहोत साड़ी खु --

जो काफी सुंदर लग रहा है हरा भरा पेड़ पौधे बगल में बिल्डिंग है।

ये एक बहोत बड़ी नदी है।

और छोटा सा पौधा दिख रहा है उसके सामने डस्टबिन है पीछे एक लड़का मोबाइल चलाते--

टैटू बना हुआ है गेट है कांच है सब दिख रहे हैं।

हां ये डांस क्लास है यहां पे सात लड़के लड़कियां अपना--

ऊपर जंगल पहाड़ पेड़ पौधे है।